जो की पूरी रीतिसे वॉल कंपाउंड में पैक किए गए है और जीराफ के नीचे सूखी घास डाली हुई है जिसमे वो दो जीराफ बैठे हुए है।

रखे हुए है जिसके ऊपर एक कॅमेरा रखा गया है।

यह एक वॉटर पार्क दिखाई दे रहा है जिसमे कही पे स्विमिंग पूल भी दिखाई दे रहे है।

राइट साइड में एक टंकी शो कर रही है और उसके पीछे हरे हरे बहोत से पेड़ दिखाइ दे रहे है और ऊपर एक आसमान है।

यह एक बहुत बड़ी नदी है जिसके ऊपर से एक पुलिया बनाया गया है।

यह एक रूम है जिसमे एक ब्लुशिंग्टन का बोर्ड लगाया गया है और कुछ सर्टिफिकेट दीवार पर लटकाए गए है।

और खुला मैदान भी दिखाई दे रहा है जो पूरी सीमेंट से ढका गया है और खुला आसमान भी दिखाई दे रहा है।

और वो चेयर दिखाई दे रही है और रेड कलर की फर है और दीवार पर एक फोटो भी लटकाया गया है।